यह न बेसिकली शॉप हैं जिसमें कॉप्स वगैरा रखे हुए हैं लाइटनिंग वगैरा दिख रही है और सारी--

यहाँ पे न बहुत सारी फ़िशेस रखी हुई हैं प्रौंस वागेरा बहुत बड़ी बड़ी फिश हैं अंकल हैं एक--

कुछ दोस्त दिख रहे है उसमें जो फिश सेल कर रहे है नाव वगैरह दिखाई दे रही है समुंदर दिखाई दे रहा है कुछ लोग दिखा रहे होंगे बहुत सारी उन बहुत सारी फिशेज वगैरह है।

यहाँ पर ना मतलब यह न ट्रेन वगैरह सेटअप दिया हुआ है और ना पेड़ वगैरह लगे हुए है डॉग्स वगैरह बैठे हुए है और प्लेटफार्म है यह बैसिकली शो होग--

बहुत सारे लड़के बैठाए हैं अलग अलग --]

और एक ऑन्टी और एक बच्ची बैठी हुई हैं डेकोरेन इधर न मिनारे वगेरा बहुत सारे पेड़ है घोड़ा वगेरा बना हुआ है और एक लड़का गाड़ी पे जा रहा है।

बच्चे है जो की हेयर कट करवा रह है और जो कुछ बच्चे है कुछ न कुछ कर रह है पर्दा वगैरा है खिड़किया वगैरा लाइटिंग वगैरा भी है।

उधर न किसी का घर बन रहा है कुछ मजदुर्स है जोकि मेहनत कर रहे है सीमेंट रेत वगैरह भर रहे है न व्हाइट कलर का पूरा सेटअप है उसमें व्हाइट कपड़े पहने --